सभी लोगो ने मुँह पे मास्क लगा रखी है और बहोत यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की मच्छलियों को रखी गया है।

सामने एक ठेला रखा हुआ है उसके बगल मे कई स्कूटर रखे हुए हैँ सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हैँ ऊपर कराकट देखे जा सकते हैँ अन्दर से कुछ लोगों को बाहर आते हुए भी देखा जा सकता हैँ।

यहाँ पर के सोफे रखा हुआ है सोफे के ऊपर एक बैग रखा हुआ है ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है अंदर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

अगल बगल में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पे कई लोगो ने एक साथ लाइन लगा रखी है और यहाँ पे--

इसके पीछे और भी टेमपू देखे जा सकते है ब सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस मे बहुत सारी खिड़किया वगैरा लगाई गयी है ऊपर लाइट की तारे जाती हुई साफ देखि जा सकती है नीचे पक्की रोड है।

यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा देखा जा सकता जो अपनी हाथों को पीछे की ओर किया हुआ हैं व टोपी पहना हुआ हैं टोपी का कलर सफेद दिखाई दे रहा हैं और पीछे कोई दुकान वुकान दिखाई--

लाइटे जल जो काफी उजाला कर रही है नीचे कुछ है बा धरती जैसे देखे जा सकते हैं अगल बगल कुछ टाइलसे बिछी दिखी जा सकती है कुछ हरे हरे पेड़ पौधे जैसे कुछ देखे जा सकते हैं कुछ फूले देखी जा सकती हैं ।

यहाँ पर भी एक स्टेज देखा जा सकता है जिसके आगे कुछ लोग खड़े हुए देखे जा सकते है जो काफी बड़े दिखाई दे रहे है पीछे कोई बड़ी-सी सजावट की गई है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा हैं।

स्टेज का कलर नीचे का ब्लू दिखाई दे रहा है नीचे हरी हरी घास उगी हुई देखी जा सकती है बगल में एक साड़ी पहन कर महिला खड़ी हुई है आगे से कुछ सीढ़ी लगाया गया है जिसके द्वारा स्टेज पर चढ़ा जा सकता हैं।

शर्ट पहने हुए शर्ट पैंट पहने हुए पीछे एक छोटा-सा दुकान देखा जा सकता है गुमटी जैसा उसके बगल में एक बड़ा- सा वो दु-दुकान देखा जा सकता हैं।